create a marc framework पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम koha में marc framework बनाना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux operating system 1604 और koha version 1605
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको library science का ज्ञान होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
शुरू करने से पहले ध्यान दें किframeworks को एडिट या डिलीट किया जा सकता है
superlibrarian अपने libraries की आवश्यकता के अनुसार अपने स्वयं के frameworks बना सकते हैं
चलो शुरू करते हैं मैं koha interface पर जाती हूँ
superlibrarian यूजरनेम bella और उसके password से login करें
अब हम koha interface superlibrarian bella में हैं
koha administration पर जाएँ
catalog section में marc bibliographic framework पर click करें
एक नया पेज खुलता है
plus new framework पर click करें
विवरण भरने के लिए एक नया पेज खुलता है
framework code के field में मैं bk type करुँगी
description के लिए मैं books type करुँगी
फिर नीचे submit button पर click करें
खुलने वाले नए पेज पर code bk पर जाएँ उदाहरण के लिए books
actions टैब से marc structure पर click करें
एक नया पेज marc framework for books bk खुलता है इस टाइटल में यहाँ ok बटन पर क्लिक करें
समान टाइटल marc framework for books bk के साथ एक और पेज खुलता है
यह 342 tags में से 1 से 20 tags को दिखाता है
हालांकि आप अपनी screen पर अधिक संख्या में tags देख सकते हैं
ध्यान दें कि यहाँ कुल 342 default tags हैं मैं books के लिए कुछ ही tags चुनूँगी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार tags चुन सकते हैं
ध्यान tag कि यहाँ edit और delete options tag हैं
मैं दिखाऊँगी कि इन्हें कैसे डिलीट करना है
मैं tag number 010library of congress control number चुनूँगी
दाई ओर delete टैब पर क्लिक कर करने पर एक popअप window at है:
yes delete this tag पर click करें
एक और window tag deleted message के साथ दिखाई देता है ok पर click करें
marc framework for books bk पेज फिर से खुलता है
इस पेज पर टैग number 010 अब नहीं दिखाई देगा
इसी तरह किसी any tags को डिलीट करें जो किसी विशेष item type से संबंधित न हो
tags को edit करने के लिए actions पर जाएँ और edit option चुनें
मैं tag number number 000 leader को चुनूँगी
फिर edit पर click करें
निम्नलिखित fields koha द्वारा default रूप से भर चुके हैं
ध्यान the कि label for lib staff client में दिखाई देगा label for opac opac के marc व्यू में दिखाई देगा
अपनी आवश्यकता के अनुसार repeatable: चेकबॉक्स को check करें
koha default रूप से mandatory के लिए चेकबॉक्स को check करेगा
मैं repeatable चैकबॉक्स check करुँगी
ध्यान दें यदि आप repeatable पर click करते हैं तबfield के पास cataloging में एक plus चिह्न होगा
यह मूल रूप से 3 से अधिक लेखकों या संपादकों के लिए आवश्यक है जो आपको उसी tag के कई और विवरण जोड़ने की अनुमति details हैं
यदि koha द्वारा mandatory को clicked या स्वचालित रूप से चुना गया हैतब तक record सेव नहीं हो सकता जब तक कि आप इस विशेष tag के लिए कोई value आवंटित न करें
koha interface पर वापस जाएँ
सभी विवरण भरने के बाद save changes पर click करें
खुलने वाले नए yes में ध्यान दें किtag number 000 के लिए leader: repeatable और mandatory yes के रूप में दिखाई tag
इसके बाद सीखते हैं कि authority file को कैसे सक्षम करना है
koha administration पर जाएँ
और global system preferences पर click करें
acquisitions preferences खुलता है
बाईं ओर टैब की सूची से authorities पर click करें
general section में value of preference बदलना शुरू करें
authdisplayhierarchy के लिए dropdown से display चुनें
autocreateauthorities के लिए generate चुनें
biblioaddsauthorities के लिए allow चुनें dontmerge के लिए do चुनें
marcauthoritycontrolfield008 और unimarcauthorityfield100 को ऐसे ही छोड दें जैसे यह है
useauthoritiesfortracings के लिए koha default रूप से use चुनता है
linker section में default values को catalogmodulerelink के लिए बरकरार रखा जाना चाहिए
linkerkeepstale linkermodule
linkeroptions linkerrelink
अब save all authorities preferences पर click करें
अब आप koha के superlibrarian account से लॉगआउट कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए ऊपरी दाएँ कोने पर जाएँ
spoken tutorial library पर click करें और dropdown से log out चुनें
यह marc framework के लिए आवश्यक सभी setup को पूरा करता है
संक्षेप में इस tutorial में हमने koha में marc framework बनाना सीखा
नियतकार्य के रूप में serials के लिए एक नया marc framework बनाएँ
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया timed के साथ अपने प्रश्न को इस forum में post करें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
यह ट्यूटोरियल विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद